मूर्तियों के पीछे बहुत सारी लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं और शीशे के पीछे भी हैं।

पीछे एक घर बना हुआ है जिसके अंदर लोहे की जाली लग रही है।

पार्क के अंदर लाइटे लगी हुई हैं और इधर झूला भी लगा हुआ--

इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े और छोटे भी पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक घर के अंदर का फोटो है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं।